यहां रेलिंग लगी हुई दिख रही है।

इस चित्र में हमें यहां एक बहोत सुंदर रूम दिखाई दे रहा है।

यहां चित्र में हमें यहां पे बहोत सी मशीनें दिखाई दे रही है।

हमें यहां पे बहोत से धान पीसने की--

बाजू में एक ए_सी लगी हुई है और दो लड़कियों का चित्र बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे हमे बहोत सारे टेबल्स और कूची दिख रहे है।